यहाँ कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं और यहाँ एक पोस्टर दिया हुआ है जिसमें बहोत सारी फोटो बनी हुई हैं और यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है जिसके ऊपर बच्चे डांस कर रहे हैं।

जिसपे एक पेड़ लगा हुआ है इसके पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और ये दोनों हाथ जोड़ो के खड़ा हुआ है।

यह एक बुक स्टेशनरी का फोटो है जहाँ ह कबोर्ड में बहुत सारी बुक रखी हुई हैं और दो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं।

और एक बैनर लगा हुआ है जिसमें फाउंडेशन लिखा हुआ है और आर्थक की पाठशाला भी यहाँ लिखा हुआ --

और यहाँ पर ईस्टेज बना हुआ है और स्टेज पर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। स्टेज पे हमें बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है और नीचे कुछ लोग खड़े हैं ग्राउंड मे खड़े हुए हैं।